मुझे इस तस्वीर में कार्टून से बना हुआ सेल्फ दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे इंसान दिखाई दे रहा है एक डायनो का स्टेचू भी है।

बरांडे के साइड में दरवाजे भी हैं।

कछुआ का कलर काला और ऑरेंज है।

खिड़की भी लगा के है।

मुझे इस तस्वीर में तोक्ता से बना हुआ बड़ा सा शेल्फ दिखाई दे रहा है।

बाहर में गेट भी है।

यह में टाइल्स भी बिछाया हुआ है।